कई सारे लोग कोट पैंट पहने हुए हैं।

दो कार खड़ी दिखाई दे रही है।

साड़ी दिखा रहा है और एक व्यक्ति साड़ी देख रहा है।

और एक साइड में कुर्सी रखी हुई है।

यहां पर व्यायाम शाला का बोर्ड भी लगा है।

बैठने के लिए सोफा भी रखा हुआ है।

तीन लोग खड़े हो कर आपस में बात कर रहे हैं।

यह चित्र किसी पार्क का प्रतीत हो रहा है।

उसमें कुछ लिखा है कई सारे पेड़ दिख रहे हैं।

यहां सामने लोहे के कुछ दरवाजे पड़े हुए हैं।

कई सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जमीन पर।

इस चित्र में कई सारी महिलाएं दिख रही है ऐसा लग रहा है किसी की शादी का चित्र है।

यहां पे कई सारे खिलौने के--

ये चित्र किसी कमरे का प्रतीत हो रहा है।

भगवान शंकर की शिवलिंग का प्रतीत हो रहा है।

यह चित्र किसी बैंक का समझ में आ रहा है।

और एक व्यक्ति डंडा पकड़े हुए खड़ा है।

साइड में एक सफेद कलर का कपड़ा रखा हुआ है।

और बच्चे भी हैं पुरुष भी दिख रहे हैं।